अंदर समान रखा है कपड़े लटके हुये और एक लड़का बाहर खड़ा है एक लड़का --

--और लगा हुआ है सामने कूलर दिख रहे है आसमान दिख रहा--

दो खिड़कियां दिख रही है एक गेट दिख रा हुआ है गेट खुला हुआ है दो खिड़कियाँ साइड में पेड़ दिख रहा है झील नदी का हरि-हरि घास दिख रही है।

--और यहाँ चद्दर और बड़ा घर दिख रहा है धुप दिख रही है परछाई दिख रही हैं आसमान दिख रहा है।